बैंक के बिल्डिंग में एसी लगा हुआ है और एटीएम भी दिख रहा है सामने से रोड गया हुआ है।

जैसा कि हम इस फोटो में देख रहे हैं ऊपर की ओर बादल दिख रहे हैं जो कि स्काई ब्लू कलर के दिख रहे हैं।

यह एक मार्केट है और यहाँ रोड में गाड़ी कार खड़ी हैं।

जैसा कि हम इस फोटो में देख रहै हैं यह एक उर्गा पूर्व स्थान है जहाँ लोग आके रहते हैं।

रोड़ गई हुई है रोड में पेड़ लगे हुए हैं और घास भी लगी हुई है जो की देखने में सुंदर दिख--

जैसा कि हम इस फोटो में देख पा रहै हैं यह एक सिटी कैफे हैं।

जैसा कि हम इस फ़ोटो में देख पा रहै हैं यह एक सलोन हैं।

चाबी दे रहा है और आंटी ने ई रिक्शा खरीदा हुआ है और वह फोटो खीचा रहे हैं।